कुछ महिला एवं पुरुष भी खड़े हुए हैं।

एक पुरुष हेलमेट पहन कर खड़ा हुआ है।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

साइकिल किनारे खड़े हुए हैं।

शीशे भी लगे हुए हैं।

बहुत सारे पौधे हैं जिनमें कुछ फूल के पौधे भी हैं।

पत्थरों पर बैठे हुए हैं।

यह दृश्य किसी रेस्टोरेंट का है।

कैमरा भी लगा हुआ है।

किनारे बहुत सी ईंटे सजा कर रखी हुई हैं।

यह बैंक के बाहर का दृश्य है।

उसके बोर्ड पर सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया लिखा हुआ है।

यह किसी कमरे का दृश्य है।

दीवाल पर दो टीवीयां लगी हुई है और एक घड़ी और कुछ फ्रेम भी लगे हुए हैं।

किनारे ड्रम्स लगी हुई हैं।

एक घड़ी भी लगी हुई है।

जमीन पर हरे रंग की कारपेट बिछी हुई है।

दुकान में बहोत सारे सामान है।